यह महानगर के नार्मल चौराहे के समीप बेतिहाता में अलदातपुर के करीब में स्थित है यहां पर कपड़ों की क्वालिटी उत्तम रहती है।

ये तस्वीर एक प्रिंटिंग प्रेस की है जो कि हैंड ऑपरेटेड है मतलब हस्त चलित मुद्रण यंत्र जिसमें हाथ से प्रिंटिंग की जाएगी।

बिना प्रिंटिंग प्रेस के प्रिंट मीडिया का अस्तितव समाप्त --

आजू-बाजू में स्थित है। इसी के सामने सेंट एंड्यूट कॉलेज गोरखपुर भी स्थित है और चर्च के बगल में सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज स्थित है। शहर में दो प्रकार के सेंट एंड्रूज की कॉलेज संचारित है एक इंटर कॉलेज है एक डिग्री कॉलेज है।

अस्पताल प्राइवेट होने के कारण यहां पर --

ये गिफ्ट शॉप है यहां पर गिफ्ट मिलता है जिसका नाम इवेंट्स गिफ्ट --

पूर्वांचल में इसे ऑटो रिक्शा से ही जाना जाता है लेकिन नोएडा और एन_सी_आर की जगह परिषद डिग्री के नाम से भी जाना जाता है।

यहां पर दो ट्रेनें लगी हुई हैं।

और कहीं भी हादसा हो सकता है इसलिए सरकार को इन्हें चिह्नित करके --

और उचित दाम पर भी उपलब्ध हैं। ये कहचरी चौराहे पर स्थित है।

बैट-बॉल से क्रिकेट खेल खेला जाता है।

और आगे दो इरिक्षा दिखाई दे रहे हैं।

उ य समानतः क्रिसमस के दिन बहुत ही जोर तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और उसी के दिन ईसाई और पादरी यहाँ पर आ कर पूजा पाठ अपना करते रहते हैं।

जहां पर घनघोर बादलों की छाया दिख रही है और पेड़ दिख रहा है हरियाली इसमें बहुत ही ज्यादा दिख रही है।

किसी कार्यालय की तस्वीर दिखाई म्म पड़ती है। कार्यालय का हो सकता है। ये आंध्रा बैंक का ही आंध्रा बैंक का बैंक कार्यालय हां ये कंफर्म है कि आंध्रा बैंक का --

में कोई शादी का कार्यक्रम दिखाई पड़ता है जहाँ पर फव्वारा --

निकल रहा है हो सकता है कि जी मेरे ख्याल की या --

या हो सकता है दिवाली के समय का दृश्य हो क्योकिं पूरे रोशनी से जग मगा रहे है जो भी अगल आजू बाजू में बिल्डिंग दिख रहे हैं बच्चे दिख रहे हैं हो सकता है पार्क का भी दृश्य हो सकता है।

यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है।

ये आई_टी_आई कॉलेज का तस्वीर है।

ये किसी व्यवसायी की किराने की दुकान --